यहां पर गांव में मिट्टी बहुत है।

एक्सो के यहां पर बड़े बड़े कंपनियों की सामान मिलते हैं यहां पर बहुत सारे--

यहां पर बहुत सारी मिट्टी बिखरी हुई है।